दो खजूर के पेड़ दो कोनों पर लगे हैं।

और इस दुकान पर तरबूज रखा है।

चारों साइड बाउंड्री खींची हुई है।

ये एक बड़ा सा पार्क है।

बहुत बड़ा गड्ढा एक बन गया है दो खंभे लगे हैं।

कुछ दिए यहां पर बुझे हुए हैं।

दो खिड़कियों के पर्दे हटे हुए हैं।

लौन की दीवारें सफेद कलर की हैं।

एक बैंक का नाम है एक्सेस बैंक ।

एक बोट खड़ी हुई है जो खुटे से किनारे पत्थरों पर बंधी है।

एक आदमी फोटो खींच रहा है।

ऊपर एक एल_इ_डी भी लगी है जिसमें तीन लोग दिख रहे हैं।

बहुत सारे पोस्टर और मेन्यू लगे हुए हैं।

और इसपे डिजाइन घास की लगी हुई है।

की सड़क सीधे जा रही है।

और बाकी जिगह खाली है।

उस पे दो काली बोतलें रखी हैं।

इस बागीचे में कुछ छोटे छोटे पेड़ बहोत सारे पन्नी में रखे हुए हैं।

और बहोत सारे लोग मॉल में घूमने आए हैं।

इनके पीछे कुछ पेड़ अच्छे लगे हुए हैं।

यहां पर तीन लोग बजा रहे हैं।

पंडाल में टेंट भी लगा हुआ है।

जिसकी छत सफेद कलर की है और बॉर्डर नीला और गुलाबी कलर का है।

एक कार पीछे भी खड़ी है।

और बहोत सारे पेड़ किनारे पर लगे हैं।

और बच्चे स्कूल की बालकनी में खड़े हुए हैं।

इसपे लाल हरा नीले कलर से लिखा है कुमार बुक हाउस ।

जिसके बीच में एक नदी भी है।

योगा क्लास चल रही है।

पहिए की डिजाइन भी लगी है बहोत सारी जिसका कलर लाल और गोल्डन है।

सब पेड़ों पर लाल और पीले कलर का पेंट हो रखा है।